और काफी लोग इसको निहार रहे हैं एक जना इसकी फोटो खींच रहा हैं कैमरे में --

और पीछे रहस्य अ कई आवास बने हुए हैं फ्लैट बने हुए हैं हरियाली भी है और बहोत बड़ा लैंड है ये।

पटाखा छोड़ रहा है बाकी सारे डांस कर रहे हैं छोटे बच्चे व्हाइट कलर की ड्रेस और रेड कलर की ड्रेस में पीछे स्कूल का होडिंग भी लगा हुआ है।

फोटो में कुछ अ पैसेंजर उतरे है एक वाइट कलर की गाड़ी है काफी तंग मार्ग दिखाई दे रहा है पीछे बिल्डिंग भी बहोत बड़ी है।

उस सूरज की फोटो बोहोत ही अच्छी लग रही है तालाब के अंदर की ये फोटो है पास में बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं।

ब्ल्यू कलर का ये पक्षी पौधों के बीच में अपनी आभा बिखेरते हुए --

अच्छे अच्छे अशोक के पेड़ लगे हुए हैं स्ट्रीट लाइट्स बहुत अच्छी हैं पानी साफ है।

उन्होंने जगह बनाई है बहोत ही बढ़िया हरियाली बड़े पेड़ नीचे घास बहोत ही सुंदर --

बहुत ही सुंदर ऑफिस एरिया ज्वेलरी की शॉप --

पूर्णतः ए_सी डबल ए_सी लगे हुए हैं बैठने की उत्तम व्यवस्था के साथ में सामने एक हाथी का स्टेचू बहोत ही शान --

सारे यंग बॉयज की बाइक खड़ी है बाइक्स छाया में खड़ी है लोग आ जा रहे --

नर्सरी की फोटो हैं यहां पर अच्छे घमले एक स्टैंड पे रखे हुए हैं गमले को --

कंप्यूटर शॉप का ये फोटो है जहां पे एप्सन एच_पी --

पुल की फोटो है जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है कंस्ट्रक्शन चल रहा है पास में कुछ ऑरेंज कलर की --

पास में गमलों में भी पौधे लगा रखे हैं।

चायपाती घी बिस्किट सभी वैरायटी मतलब है।

पेट्रोल पंप की फ़ोटो है आई लव बीकानेर का यहां पर सेल्फी प्वाइंट बना हुआ है फ्री एयर --